नदी के किनारे-किनारे घर भी दिख रहा है। अच्छे-अच्छे घर--

यात्रियों को बैठने के लिए --

आसमान मे बादल दिख रहे हैं।

थोड़ा नदी भी है थोड़ा तालाब टाइप का है पानी भी है हरा-भरा घास है।

बढ़िया सा रोड है बहुत सारे --